यहाँ पर बहुत सारी दुकाने दिख रही हैं दुकानों पर आम के पत्ते दिख रहे हैं फूल दिख रहे हैं।

और कुछ लोग दिख रहे हैं। पीछे भगवान की भगवान जी की तस्वीरें लगी हुए है माँ काली की दुर्गा की और ब महादेव की भी।

ऊपर वह माता रानी की तस्वीर लगी हुई है |

यहाँ आस-पास काफी आम के पेड़-पौधे भी है काफी जंगल भी दिख रहा है काफी पेड़-पौधे दिख रहे हैं ।

गुफा के अंदर से दो व्यक्ति हाथ करते हुए दिख रहे हैं और हँसते हुए भी दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक व्यवहार न्यायालय सीता मंदिर मुख्य द्वार यहाँ पर है |

यहाँ पर एक पूल दिख रहा है जो की फोटो क्लिक किया गया है | पूल काफी रंगीन और काफी अच्छा है | इसमे येलो ऑरेंज कत्थई --

यहाँ पर एक बड़ा-सा गेराज शो कर रहे --

और ब्रिज दिख रहा है ब्रिज पर लाइट दिख रही है लाइट के खम्बे दिख रहे हैं बल्ब भी लगे हुए हैं ।

यहाँ पर एक रोड दिख रहा है रोड के आसपास काफी पेड़-पौधे दिख रहें हैं बिल्डिंग्स दिख रहीं हैं।

बाइक्स दिख रही है ऑटो रिक्शा वाले दिख रहे हैं रिक्शा के पास में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग शो कर रही है पास में ही नेटवर्क जो की डाटा के छतरी मोबाइल में ने --

आता है बॉयज जो भी अपने नेटवर्क का आसपास किये जाता है नेटवर्क डाटा नेटवर्क --

यहाँ पर एक बड़ा फुर्स्टाटे सजा हुआ है जो की शादी के लिए के लिए सजाया गया है या शादी के लिए ही सजाया गया है | सामने एक बड़ा सा --

लाइट जल रही है जो काफी रंगीन और काफी सुन्दर लग रही है |

ये एक बिज़नेस बिल्डिंग हो सकती है |

एक पेड़ खड़ा हुआ पेड़ के नीचे में कुछ बाइक्स रखी हुई है कुछ बिल्डिंग के अंदर भी रखी हुई हैं | दरवाजा दिख रहा है खिड़कियाँ दिख रही --

अच्छा लग रहा है धुवा दिख रही है और यहाँ पर कुछ बकरिया दिख रही हैं जो की दाना खाने आयी हुई हैं।

जो एस.भी.एस.सी. ये बिल्डिंग का नाम है जो काफी बड़े और काफी अच्छी लग रही है।

काफी अच्छे से सजाया जा रहा है बलूंस लगे हुए हैं डेकोरेट हुआ उउ किया गया है।